सुंदर सा मकान टेन्ट नजर आ रहा है।

और बंदर बैठा हुआ है और सफेद दीवार नजर आ रही है और डाली नजर आ रही--

काले पत्थर नजर आ रहे हैं और पानी बह रहा है और पौधे नजर आ रहे हैं और सुंदर सा पूल नजर आ रहा है।

लाल कलर का मंढा भी दिख रहा है पीला भी मंढा दिख रहा है।

की कष्टि दिख रही है और अपनी नजर आ रहा है और हरा रंग के पौधे नजर आ रहे--